ये तस्वीर में आप देख रहे हैं यह तस्वीर एक कपड़ो की है बॉल की है ये स्पोर्ट के लिए --

जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे है यह तस्वीर एक माननीय शासकीय विभाग --